बड़ा सा ऑफिस दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा जहां पर कुछ दुकानें दिखाई दे रही है।

फर्नीचर है ये जो बहोत ही सुंदर डिजाइन किया गया है।

ये आदमी देखो सामने पीछे की ओर खड़ा होकर--

एक औरत और दो बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं।

इस इमेज में दिखेगा यहां पर सामने--